बोरियां रखी हुई हैं। बोरि में अनाज रखा हुआ है।

फूलो की लड़ी लगी है।

कच्चा रास्ता है | रास्ते के किनारे पर लाइन से ढेर सारी साइकिलें खेड़ी है ।

एक लड़का है एक बूढी औरत है खम्बे लगे हैं पेड़ है।